चारों ओर से बाउंड्री किया गया है यहाँ पे एक जंगल भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे घर को झालर लाइट से पूरा सजाया गया है।

इस तस्वीर में दुख दिखाई दे रहा है कि ये साईं सिद्धि --

ये एक राजमहल जैसा दिखाई दे रहा है ये एक जंगल के बीच में बना है यहाँ पे फूल भी दिखाई दे रहे है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

नट-वोल्ट कसने का औजार है यहाँ पे शटर लगा हुआ है यहाँ पे तार है यहाँ नीला आसमान हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहां पे दो छत का बिल्डिंग है।

यहाँ पे एक लड़का कैंची पकड़ा हुआ है और कुछ रंगो के पेजों को--

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ये एक गाड़ी का गैराज है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ स्टेज में कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर --

एक इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बहोत बड़ा पूल है पूल में गेट लगा हुआ हैं।

जब कम पानी होता है तो गेट को बंद कर दिया जाता है और ज्यादा होने पर गेट को खोल दिया जाता है।

स्टेज बना हुआ है स्टेज बहुत बेहतरीन ढंग से डेकोरेट किया गया है इसमें --